ये ब्रिज कहीं का प्रतीत होता है रेलवे ब्रिज हैं और एक ये जनरल ब्रिज हैं जिसमे बस ट्रक बाइक कार और पब्लिक चलती हैं।